सब्जी मंडी है जहाँ पे और यहाँ पे शिमला मिर्चकेलाबाइ नींबू और--

--कुछ बच्चे है जोकि यहाँ पे बोहत सारी कैंचिया और पेपर काट काट के कार्ड्स काट काट कुछ निकाल के चिपका--

ये सबको देख रही है और ये ड्राइंग हो रहा है और कोई ड्राइंग कॉपी में ड्राइंग बना रहा है और कोई उसमे कलर भर रहा है भोत को दीपावली का दिया बनाया हुआ है।

टीका लगा के डांस करते हुए नज़र आ रहा है पीछे बलूंस भी डेकोरेशन की गयी है और चेयर और टेबल्स भी है।

डांस क्लास है जहाँ पे बोहत सारे छोटे छोटे बच्चे है और छोटी छोटी लड़किया और बड़ी बड़ी लड़किया भी यहाँ पे डांस सीख रही है हाथ उठा के पैरो को फैला के आईना के और देख के बोहत लोग पीछे --

एक बस अड्डा है जहा पे बोहत ही भीड़ है बोहत ही लम्बी लाइन लगी हुई है बोहत सारे लोग बैग टांग के खड़े है बोहत सारे लोग है।

उस जगह को खोद रहे है मट्टी को खोद रहे है और बाकि सब देख रहे है उसे-- ।

इस स्कूल की फेस्टिवल होता है तो यहाँ फंक्शन होता है यहाँ पे स्टेज में बोहत सारे बच्चे है जो सेंटाक्लॉस बने हुए है सेंटाक्लॉस की टोपी पहनी हुई है।

एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है जहा पर बोहत सारे लोग खाने को बैठे हुए है बोहत को ऊंचा वाला कुर्सी में काउंटर में बैठा हुआ है बोहत कुछ टेबल में बैठा हुआ --

यह एक बुक स्टोर की फोटो है जिसके बगल मे एक मेडिकल शॉप है वह बहोत सारे लोग है जोकि खरीद रहे है।

--और बुक और इसके बाहर बहुत सारे रेड और क्रीम पहन हुआ बच्चा है जो के बोर्ड की और दिख रहे है ओर बहोत सारी बुक है बुक स्टोर मे --

बहोत सारे बच्चे स्लाईड में पेड़ के पीछे बहोत सारे घर है और पेड़ और जंगल नजर आ रहे हैं।